इसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं।

और पीछे में बहुत सा फोग है।

इस पिक्चर में एक वाटर पूल है।

ब्लैक कलर का लैपटॉप भी रखा गया है।

पिक्चर में एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सारे लोग बैठा हुआ है।

बगल में एक इंसान जा रहा है प्लास्टिक पकड़ के।

घर जो चारों तरफ से वाइट कलर का पेंट किया गया है।

और सामने में ब्लैक कलर का कैलकुलेट मशीन है।

इस पिक्चर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है।

सामने में बहोत बड़ा बड़ा वाला ब्लू कलर का पाइप है।

और आगे में बहोत सा पत्थर है।

और मैदान में छोटा छोटा घास भी बहोत सारा है।

दीवार पीला कलर का पेंट किया गया है।

ऊपर में दो पंखा चल रहा है।

और घर में बहोत सा खिड़की भी है।

इस पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।

इस इस पिक्चर में एक बड़ा सा स्कूल है जिसमें सामने में एक बच्चा खड़ा हुआ है।

इस पिक्चर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है।